कुछ यहां पर सोने और हीरे की चीजे भी दिखाई दे रही है और--

ऊपर का फ्लोर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है सामने ही--

जो कि यहां पर हमें कुछ पोस्टर के साथ दिखाई दे रही है।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

एक व्यक्ति यहाँ ग्रीन शर्ट में इसकी--

यहां पर रिसेप्शन पर खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

ब्राउन कलर का टेबल दिख रहा है फ्लोर का कलर गेहरे व्हाइट कलर का है।

इस पिक्चर में हमें वाइट कलर का बच्चों के खेलने का एक झूला और स्लाइड करने का दिखाई दे रहा है।

सामने गेट के आगे खड़े हैं कुछ टीचर भी खड़े हैं बच्चों के--

चारपाई पीछे लगे हुए कुछ बोर्ड्स भी--

ये और कुछ तलाब बना हुआ है सामने ही हमें--

यहां पर चेयर्स लगी हुई रेड कलर की है।

यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है सामने ही हमें--

इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है कुछ चेयर्स लगी हुई।

चेयर्स का कलर हमें ब्लैक दिख रहा है बाहर की तरफ हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक टेंपो दिखाई दे रहा है।

सामने ही कुछ पेड़ दिख रहे हैं जोकि ग्रीन कलर के हैं।

कुछ यहां पर वाइट कलर की बसेस दिख रही हैं साइड में ही यहां पर हमें रेड कलर की भी एक बस दिख रही है।

दिख रही है और कांच दिख रहे है व्हाइट कलर के--

शॉप दिख रहा है। ऊपर की ओर कुछ लाइट के बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने हीे हमें एक स्टैचू दिख रहा है।